इस पिक्चर में एक स्टेट बैंक इंडिया का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और कुछ सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

और काफी सारा पूजा का सामान भी रखा हुआ है कुछ बच्चे भी आसपास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

गुंबद के ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए दिख रहे हैं और मंदिर के पीछे--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

और कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है जिसमें ब्लैक कलर की जाली लगी है और पास में ही एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है जोकि ब्राउन कलर का है।